पीछे के दीवाल का रंग सफेद है।

जिसमें कई सारे अलग अलग तरह के मशीन हैं।

ये सारे आदमी लोग हैं एक आदमी चेयर पर बैठा है और एक खड़ा है और एक अपनी गाड़ी के पास खड़ा है।

इस फोटो में कई सारी लकड़ी से बनाया हुआ चीज है।

कई सारे आदमी और कई सारे औरतें हैं।

एक ट्यूबलाइट जल रहा है जिसका रंग सफेद है ऊपर एक पंखा टंगा है जिसका रंग भूरा है।

इस फोटो में एक बड़ा सा गेट है जिसका रंग काला है।

सबके सामने योगा मैट बिछा है जो कि अलग अलग रंग का है।

नीचे भी दो सूटकेस रखा हुआ है और बाहर कई सारे चेयर है और बाहर कई सारे सामान हैं।

इस फोटो में सामने एक दुकान है जिसका रंग बाहर से नीला है।

बहार फूलों से सजाया हुआ है एक दो बड़ा सा पोस्टर है।